और बड़े-बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे है एक आदमी लाल शर्ट में --

ब्लैक और वाइट कलर में फिश दिखाई दे रही है एक औरत और एक आदमी उस फिश को --

उस पर इनफार्मेशन दी गयी है अलग-अलग विषय पर अलग-अलग इनफार्मेशन है।

औरत लास्ट टोल में खड़ी है ।

कार दिखाई दे रही है वो कार वाइट और ब्लैक में दिखाई दे रही है एक पेड़ दिखाई दे रहा है |

हरे ग्रास भी दिखाई दे रहे है।

होल्स दिखाई दे रहे है इलेक्ट्रिकल के वायर दिखाई दे रहे है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है कुछ बोर्ड्स दिखाई दे रहे है कुछ घरे दिखाई दे रहे है कुछ झंडे दिखाई दे रहे है --

दिखाई दे रहै है वायर्स दिखाई दे रही है एक औरत सफ़ेद ड्रेस में आ रही है उसके हाथ में एक वाइट कलर का चूडा --

एक डॉक्टर दिखाई दे रहै है और एक पेसेन्ट है पेसेन्ट सोया हुआ दिखाई दे रहा है डॉक्टर के बाजु में एक--

ओसी दिख रही है डॉक्टर उस पेसेंट को देख रहा हैं।

दिख रहे है उनके हाथ में एक तबला है और बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है सीमेंट का --

कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है एक आकाश कंदील भी दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर को उसने --

एक साईकिल दिखाई दे रही है साईकिल एक जगह पे खड़ी है कुछ लड़के दिख --